ब्लू वेलेर के कुर्सियां दिखाई दे रही है डी जे लगे हुवे है और टेंट लगा हुवा है लाल कलर का

रोड पर बहुत सरे लोग दिखाई दे रहे है एक पोलिसेवाला दिखाई दे रहा है पुलिस की जीप है एक्टिवा पे एक आदमी औरत दिखाई दे रहे